बड़ी एह आश्रम टाइप है। बोहोत बड़ी बिल्डिंग आश्रम है जोकि बोहोत अच्छा है जोकि बोहोत बाद होटल है।

मे पास-पास पेड़ हैं एक आदमी आ रहे है जा रहे है टीन शेड पड़ा हुआ है और काफी बड़े-बड़े पेड़ है।

यह एक गेट लगा हुआ है जो कि शायद एक प्लॉट है प्लॉट ये बनने की तैयारी हो रहा है। बीच में एक कुँआ टाइप है एक खाट पड़ी हुई है।

ये भी एक मछली का बाजार है जिसमें एक जेंट्स एजेड एजेड बैठे हुए हैं जो की मछली का व्यापार कर रहे हैं काफी तरह की मछलियां है छोटी बड़ी छोटी बड़ी बहुत छोटी मछलिया हैं |

एक जेन्स ब्यूटी पार्लर है जेन्स पार्लर है जिसमे एक हम्म आदमी खड़ा हुआ है जिसमे तीन चार चेयर है। एक --

जो कि अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। यहां पे बलूनस भी अच्छे से लगे हुए हैं। यलो पर्पल कलर के है और ये उनके अन्दर कम्पटीसन है और मुड़े भी रखे हैं। बलुंस रखे --